अ ब्लू कलर के पीछे की तरफ छोटे छोटे टाइल्स लगे हुए है अंधेरा हो रहा है कुछ लाइटें जल रही है कुछ पीतल के बर्तन रखे हुए है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमे खिड़की लगी हुई है खिरकियों के ऊपर कांच लगे हुई है एक तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है यहां पर बच्चे सीधे खड़े हुए है सारे टीचर्स खड़े हुए है।

ये लोग प्रेयर्स कर रहे है कच्ची जमीन है दिन का टाइम है धूप निकल निकल रही है पीछे के तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है।

एक सामने बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है जिसके ऊपर ट्वाइस लिखा हुआ है उसके अंदर बहुत सारे शरट लगे हुए हैं ऊपर के सभी शटर बंद है कुछ लाइटे लगी हुई है जो की जल नहीं रही है एक दुकान है निचे जिसमे से एक आदमी बा--